ईलाज किया जाता हैं दांत का इसलिए लोग दूर-दूर से आते हैं इस हॉस्पिटल में अपने दांत का ईलाज करवाने के लिए बहुत ही अच्छा --

और छठ पूजा हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं।